तथा उनके गलों में एक बड़ी सी फूल की माला भी डाली हुई है।

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ा सा--

इस ढाबे के ठीक बाहर बहोत सारी टेबले डली हुई है।

होटल का बड़ा सा कमरा नजर आ रहा है।

इस दुकान का नाम क्वॉलिटी स्वीट मार--

इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ा सा ऑफिस --

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

इस छत में बहुत सारे मजदूर भी मौजूद हैं जो अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं।